पार्क बीच दरख़्त लगे होए ने एक सड़के दिखाई दे रही है और कुछ पब्लिक दिखाई दे रही है दो पानी की टंकीयां दिखाई दे रहिया हैं और बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

की सामने आप देख सकते हो सामने दो गाड़ियां नजर आ रही हैं इसके सामने यहां पे पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

सामने दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

जैसे कि सामने दिखाई दे रहा है सामने दो शॉप नजर आ रही हैं जिनपे पोस्टर लगे हुए हैं।

जैसे की आप को रोड पर साइकिलें नजर आ रही हैं दो साइकिल दिखाई दे रही है सामने एक बोर्ड लगा हुआ है।

जैसे कि नंबर वन पर लगाई दिखाई दे रही--

और सामने एक खंभा नजर आ रहा है और आसपास मे काफी पेड़ नजर आ रहे हैं।

जैसे कि आप सामने देख सकते हो सामने बहुत सारी--

बेंच पर कॉफी पड़ी हुई हैं और सामने टोस्ट पड़ा हुआ हैं और आस पास बहोत सारी चेयर्स पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

जैसा कि आप सामने एक बैंक दे दिखाई दे रहा है।

औरेंज दिखाई दे रहा है औरेंज व्हाइट और ग्रीन कलर के बैलूनस लगाए दिखाई दे रहे हैं आसपास मे और बहोत सारे--

और बहुत सारे सामने खंभे और एक डिश दिखाई दे रही आसपास में दो तीन जैसे बहुत सारे व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बाहर एक पार्किंग लॉट बना हुआ है।

सामने एक रूम दिखाई दे रहा है।

आ सामने एक लेडिस भी दिखाई दे रही है उसके पास काफी लाइटें लगी हुई है पंखे लगीं हुए हैं जैसे कि सामने दिखाई दे रहा है।

उपर बहोत सारी लाइटा लगी हुई परस दिखाई दे रहे है और और बाहर बहोत सारे इंसान जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और चपलें रंग बिरंगी दिखाई दे रही हैं जैसे कि सामने देख सकते हैं आप।